सफेद गाड़ी है जिस पर गुलाबी लाल सफेद फूल लगाय होते हैं सुंदर लगी हुई है ।

एक घूमने का स्पोर्ट है जहां पर लोग नहा रहे हैं पेड़-पौधे दिख रहे है पानी बह रहा है चट्टाने नजर आ रहे हैं एक फैमिली है जो मस्ती कर रहे हैं।

काट रहे है और ये सब मछलियां है।